सामने एक होटल दिखाई दे रहा है जिसके सामने से सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है आस- पास मे लंबी - लंबी पीलरें दिख रही हैं।

आस-पास मे इलेक्ट्रिसिटी के लाइट पोस्ट भी दिख रहे हैं।

सोफ़े भी लगे हुए है साथ ही साथ स्टैन्ड टेबल स्टैन्ड भी लगा हुआ है ।

सभी गेट बंद अवस्था में दिखाई दे रहे हैं आसपास मैं कुछ और भी मकाने दिखाई दे रहे है ऊपर में जालीदार वेंटीलेटर बना दिखाई दे रहा है।